और जो एक वस्त्रम का शोरूम हैं वहाँ पर बीस पर्सेंट का डिस्काउंट दिखाया गया हैं।

उनका झूला बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीके से झूला जाता है।

और यहां पर चार आदमी लगे हुए हैं सैलून में और बालों की कटाई कर रहे हैं और ये शेविंग भी यहां पर --

एयरपोर्ट में बहुत अच्छी कुर्सियां लगी हैं देखने पर भी यह एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लग रहा है वहां पर भी ऐसी ही कुर्सियां लगी हुई है।

चित्र में एक मेला दिखाया गया है जिसमें जो ऑटो है वो खड़ी हुई है यहां पर ऑटो सेलिंग का काम चल रहा है।

अगर आपको कम इंच और ज्यादा इंच की टी_वी चाहिए वो भी एल_जी और सैमसंग के तो आप इन्हीं दुकान पर कॉन्टैक्ट करिए।

यह फोटो एक बहुत ही अच्छी अध्यान के ली गई है इसमें एक लेडी हैं जो नगर निगम में कार्यरत हैं।

वो पानी दे रही है पौधों को और पानी की वजह से ही ये पौधे इतने फैलते हैं और यहां पर --

यहां पर औरते भी बैठी है और बाहर आदमी भी बैठे हुए है जोकि बहोत ही अच्छी तरीके से भजन को सुन रहे है।

योगा स्टार्ट हो रहा है यहां पर योग करवाया जा रहा है और वह भी बहोत ही अच्छी संख्या में --